यहां में बहुत सारे बच्चे लोग दिखाई दे रहे हैं येलो वाइट रेड ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ है और सब लोग ब्लैक कलर का जूता पहना हुआ है।

यहां में येलो रेड ब्लू ग्रीन कलर का राउंड करके एक सर्कल भी दिखाई दे रहा है उसमें जंप मार रहे बच्चा लोग।

एक लड़का भी दिखाई दे रहे है और ये टेबल में बहुत सारे सामान लोग भी है और अंदर में शेफ भी दिखाई दे रहा है।

यहां में छोटा छोटा पेड़ लोग बहुत बढ़िया से सुंदर से लगाया हुआ है।

ये जो बहुत बड़ा घर दिखाई दे रहा है और यहां से गेट से एंट्री करते है और यहां में बाईसाइकिल एक ठो स्कूटी एक ठो दिखाई दे रहा है।

कुर्सी का ऊपर में दो ब्लैक कलर का बैग दिखाई दे रहा है और बैग का अंदर में बोतल पानी बोतल भी दिखाई दे रहा है और फ्लोर के भी टाइल्स लगाया हुआ है।

प्लेयर लोग दिखाई दे रहे है। और आर_सी_सी घर और सफेद कलर का बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं और ब्राउन कलर का भी एकठे दिखाई दे रहे है। और आसमान भी दिखाई दे--

ये जो ऑफिस है और यहां में कुर्सी चार ठो दिखाई दे रहे हैं रेड कलर का।

इ तस्वीर में तीना और लोहा से बनाया हुआ वला घर दिखाई दे रहा है।

इसमें लाल रंग का भी लगाया हुआ है।

दरवाजा और सिंटेक्स को ग्रीन रंग का लगाया हुआ है।

ये तस्वीर में बहोत बड़ा नदी दिखाई दे रा है।

बाहर मे काला रंग का एक स्कूटी भी दिखाई दे रहे--

हरे रंग का एक कार भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में येलो कलर का तंबू लगा के है।

ये तस्वी में बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहे हैं।

अंदर में वान टू थ्री लिखे हैं।

ये तस्वीर जो दिन समय का है।

एक लड़का जो हेलमेट पकड़ के खड़ा हो रहा है।

एक लड़का जो बैठ के दिखाई दे रहे--

उसका सामने में सफेद रंग का एक घर भी दिखाई दे रहा है।